बोहोत बड़ा गार्डन नज़र आ रहा है जहाँ एंट्री गेट दिखाई दे रही है जो ग्रीन कलर की नज़र आ रही है वहां टिकेट काउन्टर है। दिखाई दे रा है वहाँ एक व्यक्ती नज़र आ रै है जो बैग लेके ठीक है |

बोट्स नजर आ रहीं हैं और हम बोटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। अ सभी ने जैकेट पहना हुआ दिख रहा है औ कुछ ऑरेंज कलर ब्लू कलर का दिख रहा है वही --

कार्पेट वहाँ नज़र आ रहा है वही रेड्कार्पेट दिखाई दे रहा है और वहा साउंड-बॉक्स नजर आ रहा है वही से फेन दिखाई दे रहे है।

दिख रहा है बटन लगा हुआ नज़र आ रहा है। घड़ी दिख रही है वहीं वहाँ पर चेयर नज़र आ रही है जो --

और एक हॉल नज़र आ रहा है जिसमें काफी छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं। वह डांस करते हुये दिखाई दे रहे हैं और वहाँ पर --

यहां पर एक फंक्शन ऑल नजर आ रहा है जहां पर स्टेज को काफी अच्छे से सजाया गया दिख रहा है वर और वधू वहां पर दिखाई दे रहे हैं जिनकी शादी जो है करवाते हुए नजर आ रहे हैं पंडित जी |

और यहा पर जो समान है नजर आ रहा है। वही काफी सारे फ्लावर अच्छी तरह से की दिख रही है और जो बैकग्राउंड वाईट से दिखाई दे रहा है।

और यहां पेनस नजर आ रहे हैं रखे हुए। शार्पणरस नज़र आ रहें हैं। स्टेप्लरस दिखाई दे रहे हैं और ए-फोर साइज़ जो पेपर होते हैं वो नजर आ रहे हैं और कैलकुलेटर वहां दिखाई दे --